और हम ये देख पा रहे है की उनके बीच मे रखी हुई है रेड कलर की एक बाल्टी जिसमें वो डूबाकर शायद बो उसको कुछ पेंट करते हुए नजर--